और कुछ ऊपर फूल्स भी लगे हुए हैं टेंट भी लगा हुआ है बहोत अच्छा--

और पीछे एक बच्चा भी बैठा है और एक कॉलम भी रखी हुई है।

और इधर पे एक टेबल है टेबल के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे सामान रखवा है जो कि राखी है।

ये एक बहुत बड़ी झील है जहां पर पहाड़ भी है।

और ये दो आदमी जिनके फेस कवर कर रखे है ये एक बोट में जो कि ग्रीन कलर की है।

दो घड़ी बनी हुई है और बहोत अच्छा अच्छा समान--

पीछे कुछ सामान रखा हुआ है इधर पे कुछ कागज या अखबार रखा हुआ है।

इन पर कुछ तकिए भी रखे हुए है दो टेबल भी है और इधर पर कुछ दो बोर्ड भी लगे हुए है कुछ पीछे सीढ़ी है एक पीछे पर्दा लगा हुआ है।

इधर पर एक साइकिल की परछाई दिख रही है और कुछ समान भी टंग रहा है ऊपर।

और एक रेड कलर का गेट है और एक मीटर लगा हुआ है।

यह भगवान की एक रैली है।

इधर पे लाइट भी लगी हुई है लीची लगी हुई है।

और नीचे भी एक भगवान की फोटो रखी हुई है इसके बैकग्राउंड में कुछ पर्दो लगे हुए हैं कुछ लाइटें लगी हुई है।

ये एक झरना है यहां पानी बह रहा--

ये एक फूलों की माला की दुकान है यहां पर अलग अलग कलर की माला रखी हुई है वाइट कलर के फूल भी है रेड भी है ग्रीन भी है।

इसमें बहोत सारे पेड़ है और बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

और यहां पे वाईफाई वाला खंबा भी लगा हुआ है।

यह एक ट्यूशन क्लास है जहां पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके हाथ में कुछ बुक्स हैं।

पानी की बोतल रखी हुई है कुछ नेल्स रखे हुए हैं।

पीछे खिड़कियां भी है पीछे बाबा का भी फोटो लगा हुआ है।

और इसके आस पास बहुत ही अच्छी अच्छी चीज है

और इधर पर एक आदमी खड़ा होके म्यूजिक कर रहा है उधर पर एक आदमी बैठकर प्ले कर रहा है तबला।

जिसके अंदर तो दरवाजे हैं और दो पर्दे हैं।

और ये इसके साइड में पेड़ पौधे भी है और इधर पे एक ब्लू कलर का पेड़ है।

और ब्लैक गेट भी लगा हुआ है जहां इसमें नीचे ईट वाली फ़रश भी बिछी हुई है।

और उधर पे भी एक झूला है और यहां पर कुछ वायरिंग वाले खंभे हैं।

और टी_वी रखा हुआ है और एक ट्राली रखी हुई है जिस पे टी_वी रखा हुआ एक टेबल रखा है।

और दो आदमी खाना बना रहे हैं यहां पर एक पानी की टंकी रखी है ऊपर दो लाइट लगी हुई है।

घर पे एक मीटर भी लगा हुआ है बिजली वाला।

यह एक स्कूल है यहां पर कुछ बच्चे योगा कर रहे है।

और यहां पर बहुत अच्छा स्कूल है।

एक बंदा पेट्रोल डाल रहा है गाड़ी के अंदर बंदे बैठें हुएं हैं।

ये एक समुद्र है इसमें एक छोटी नाव है और इसमें एक बड़ी नाव भी है जिसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है।

एक बोट नीचे से ब्लू कलर की है।

इधर पे गन्ने भी है कुछ कपड़े रखे हुए है उधर पर लाइट जल रही है एक रेडियो लगी हुई है।

और काफी अच्छी सुंदरता है।

और इसमें हरी घास भी उग रही है और इसमें एक लाइट भी है।

और एक बॉडी वाली तस्वीर भी छपी हुई है।

जिसके सामने एक आदमी खड़ा है और ढाबे के अंदर एक ग्रीन कलर की कुर्सी रखी हुई है।

औरत बैठी हुई है कुछ कपल्स बैठे हुए हैं और यह बहोत अच्छा ढाबा है।